यह बहुत बड़ा स्कूल दिखाई दे रहा है।

यहां शादी ब्याह का समारोह दिखाई दे रहा है।

गुलाबी सी मेज बिछी हुई है इसके ऊपर गुलाबी कपड़ा--

बड़े बड़े खंभे से भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां बोहोत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है इसमें गाय भैंस चर रही है।

दे रहे हैं और थोड़ा बहोत अंधेरा सा भी दिखाई दे रहा।

बहुत सुंदर सुंदर लेडीज सूट साड़ी मिलती है।

यह सब्जी मंडी है यहां सब्जी लेके सब--

सारी चीजें इस मंडी में मिलती हैं।

यह मॉल दिखाई दे रहा है यहां पे सारा सामान मिलता है।

यहां होटल दिखाई दे रा--

और कुर्सी भी बोहोत सारी रखी है।

और आदमी बच्चे औरत सब हैं।

यहां ऊपर कपड़े भी धोके सुखा रखे हैं बड़े बड़े पारक है।

यहां आदके में जाल लगा रख्या है।

और अनार चीकू सब फल मिलते हैं बहोत सुंदर रेड़ी--

यहां कोई खाली सा घर सा नजर आ रहा है।

आ रहा है उधर भी एक रस्ता है उधर भी एक रस्ता है दोनों तरफ--

एक आदमी दाढ़ी बनवा रहा है।

यह बहुत सुंदर कपड़ों की दुकान है यहां बहुत सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं।